यहां एक मुस्लिम का कोचिंग है जहां पे एक आदमी बहोत सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं।

स्टेडियम है जहां पर दो आदमी चल रहे हैं और पीछे बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

दुकान के अंदर बहुत सारे सामान भी हैं।

ट्रेन में जा रहे है और यहां पे बहोत सारे पुरुष और महिला हैं और यहां पे एक ट्रेन का पीछे क्रॉस लिखा हुआ है।

और यहां पे एक आदमी जो फोन चला रहा है और एक औरत भी है और यहां पे एक गाड़ी पे आदमी बैठा हुआ है।

यह एक डॉक्टर का क्लीनिक है और यहां पे पुरुष महिला वेट कर रही है।

और पीछे की साइड बहुत सारे घर बने हुए हैं और झोपड़ी भी है।

और यहां पर कारपेट बिछा हुआ है और यहां पर ड्रम और सीढ़ी भी रखा हुआ है और उसके बगल में एक पेड़ पौधा भी बहोत सारे लगे हुए हैं।